इस तस्वीर में एक प्रार्थना सभा दिखाई दे रही है मेज पर एक व्यक्ति माइक से बोल रहा है।

और बगल में दूसरे व्यक्ति कुछ यंत्र बजा रहा है।

यह दृश्य चर्च के अंदर का प्रतीक होता है।

अंदर कई लोग खड़े है और अपने बाकी का इंतजार कर रहे है।

जहां लोग की भीड़ लगी हुई है और सब अपने काम के लिए इंतजार कर रहे है।

इस चित्र में एक खुले मैदान का दृश्य है जहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है।

लोग पेर के बीच खड़े और बैठे हुए मंच की ओर देख रहा है।

यह कार्यक्रम किसी आयोजक जैसा लग रहा है।

इस तस्वीर में एक इमारत की छत पर निर्माण कार्य होते हुए दिखाई दे रहा है।

नीचे दो लोग काम करते हुए दिखाई दे रहा है।

आसपास हरे और अन्य रंग का मकान दिखाई दे रहा है।

जिसे रंग बिरंगे गुब्बारे से सजा गया है।

छत और दीवार पर लाल पीली और काली गुब्बारे लटके हुए हैं।

इस चित्र में चार लोग एक साथ खड़े है पीछे फूल और सजावटो से सजा हुआ मंच दिखाई दे रहा है।

जिससे प्रतीक होता है कि यह किसी शादी या समारोह का दृश्य है।

इस तस्वीर में एक पूजा पंडाल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

आस पास अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी सज़ा गई है।

सामने पंडित और भक्तजन बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे हैं।

इस तस्वीर में एक फैक्ट्री का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां दो मजदूर काम कर रहे हैं।

यह तस्वीर किसी आयोधिक स्थल या मिल का प्रतीत होता है।

इस तस्वीर में सड़क पर ट्रैफिक का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक बाद का नजर दिखाई दे रहा है।

जहां तेज बहाव के साथ पानी छोड़ा जा रहा है।

यह तस्वीर बारिश के मौसम में ली गई प्रतीत होती है।

इस तस्वीर में लोग की लंबी लाइन दिखाई दे रही है सभी लोग सरक पर कतार में खड़े हैं और बस में चढ़ने का इंतजार कर रहे हैं।

लाल गुलाबी पीली और सुनहरी रंग की पत्तियां ऊपर से नीचे लटक रही है।

कार को प्लास्टिक से ढका रखा है।

एक व्यक्ति कार के बोनट पर पुट्टी लग रहा है और दूसरी बाल्टी में सामग्री तैयार कर रहा है।

सामने एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है।

कमरे में हरे पर्दे दीवार पर घड़ी और पंखा दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य किसी दफ्तर या कक्ष का लग रहा है जहां लोग अपने काम के लिए आए है।

यह दृश्य किसी शहर के बाजार का प्रतीक होता है।

जब की अंदर एक व्यक्ति सफेद शर्ट पर झुका हुआ है।

पास में एक सफेद डिब्बा और साइकिल भी नजर आ रही है।

बीच में मेज पर कई कुर्सियां रखी हुई हैं जिन पर कुछ लोग बैठे है।

पीछे की और ईसाई मसीह का प्रतिमा क्रूस पर लगी हुई है और दोनों ओर धार्मिक चित्र बना हुआ है।

इस तस्वीर में कुछ लड़कियां नित्य का अभ्यास करती हुई दिखाई दे रही है।

सभी नंगे पांव है और ध्यानपूर्वक नृत्य का स्टेप्स पालन कर रही है।

कमरे मे पंखा और पीछे पर्दे भी दिखाई दे रही है।

होटल के बोर्ड पर नाम अंग्रेजी और करनेट भाषा में लिखा हुआ है।

होटल का रिसेप्शन एरिया साफ सुथरा है यहां एक होटल है।

इस तस्वीर में कुछ मजदूर गोदाम के बाहर बोरियों को डालते और ट्रॉली पर लेते हुए दिखाई दे रहा है।

जबकि अन्य लोग मिलकर ट्रॉली पर बोरियां जमा रहे हैं।

उन्होंने सफेद पारंपरिक पोशाक पहन रखा है।

और हाथों से सुंदर मुद्राएं बनाई है।

इस तस्वीर में रात का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां रंग बिरंगे रोशनी से सजा हुआ एक पंडाल या मंच दिखाई दे रहा है।

जिसकी इमारत लाल और पीले रंग से बना है।

पास में ऑटो साइकिल और रिक्शा खड़ी है।

यह दृश्य किसी व्यस्त बाजार इलाके का प्रतीक होता है।

कुछ लोग सीमेंट और गागर उठाकर ले रहे हैं।

इस तस्वीर में एक भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है।

जिन पर दो व्यक्ति ऊपर की ओर चलते हुए नजर आ रहे है।

चारों ओर हरिया भी दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक स्कूल कार्यक्रम की लगती है जहां चार छोटे बच्चे दिखाई दे रहा है।

तीन बच्चे सेना की वर्दी पहने हुए हैं और हाथ में भारतीय तिरंगा झंडा लिया हुआ है।

चौथी बच्ची ने गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी है।

इस तस्वीर मे एक स्कूल का प्रागंण दिखाई दे रहा है।

बच्चे सफेद यूनिफॉर्म पहनकर दो कतारों में खड़े हैं सामने शिक्षक और कुछ विद्यार्थी अनुशासन के साथ खड़े हैं।

यह दृश्य किसी स्कूल की प्रथम सभा या राष्ट्र पर्व के अवसर पर प्रतीत होता है।

इस तस्वीर में एक हाथी नदी में खड़ी है।

इस तस्वीर में एक छोटी सी दुकान दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक बजार का दृश्य दिखाई दे रहा है सड़क के किनारे दुकान और सब्जियों के ठेले लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक इमारत की कार्य होते हुए दिखाई दे रहा है।

चारों ओर बास लकड़ी का सहारा लगा गया है।

यह दृश्य मकान की छत डालने का प्रतीक होता है।

सामने सफेद और काली गाड़ियां खड़ी है।

यह दृश्य किसी दफ्तर या स्थानीय का लगता है।

यह तस्वीर एक रंगी बिरंगी पंडाल की है जो रोशनी से सजा हुआ है।

सामने अलग अलग रंग की लाइटे चमक रही है और गेट के सामने लोग खड़े होकर अंदर जाते हुए दिखा रहा है।

अंदर देवी देवताओं का प्रतिमा नजर आ रही है।

यह दृश्य किसी दुर्गा पूजा या मेले के लग रहा है।

सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है।

जिसमें सब लोग ध्यानपूर्वक शामिल हो रहे है।

इस चित्र में एक गांव या कस्बे का बाजार क्षेत्र देख रहा है।

सामने सड़क पर मिट्टी और पत्थर का ढेर है जिसे लगता है कि निर्माण कार्य चल रहा है।

इस तस्वीर में एक हरा और पीले रंग का ई_रिक्शा खड़ा है जि जिसके पास दो व्यक्ति खड़े है।

एक ने गुलाबी शर्ट पहना है और दूसरे ने निली शर्ट --

इस चित्र मे लोग किसी धर्मिक पर्व पर एकत्रि हुआ है।

महिलाएं पारंपरिक साड़ी में पूजा सामग्री के साथ बैठी और खरि है आसपास बड़ी भीर है जिससे लगता है कि यह छठ पूजा या कई बड़ी उत्सव का है।

इस तस्वीर में पारंपरिक वैशा भूसा पहने लोग सड़क पर नृत्य करते और बड़े बड़े ढोल बजाते दिखाई दे रहे हैं।

उसके सिर पर पंख और गहना जैसी सजावट है।

यह दृश्य किसी संस्कृत जुलूस या त्योहारो का जैसा लोग उत्साह से भाग ले रहे हैं।

इस तस्वीर में बस्तर डेरी फार्म नामक की एक दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान पर दूध और डेयरी उत्पाद के साथ साथ चिप्स नमकीन और अन्य सामान भी टंगा हुआ है।

इस तस्वीर में बच्चे एक बड़े हॉल में खड़े है।

अभ्यास करते दिखाई दे रहा है।

यहां बच्चे मिलकर अभ्यास कर रहे है।

छत को थामने के लिए लकड़ी और लोहे का बालिया लगा गई है।

पीछे रंग बिरंगी पर्दे और फूलों की सुंदर सजावट की गई है।

नीचे रंगीन कालीन बिछी हुई है जिसमें मंच और भी भव्य व सुंदर लग रहा है।

इस तस्वीर मे मछली बाजार दिखाई दे रहा है।

पीछे भीड़ खड़ी है और लोग खरीदारी कर रहे हैं।

सभी उत्सव और सहयोग की भाव से कार्य कर रहे हैं।

पीछे इमारत और खुला मैदान भी दिखाई दे रहा है।

सामने दर्पण लगा हुआ है और किनारे पर पानी का कैन तथा कुर्सियां रखी है।

इस तस्वीर में कुछ मजदूर निर्माण कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है।

वे इमारत की नीव डाल रहा है और लोहे के शिरो के बीच सीमेंट कंक्रीट भर रहा है।

पास में लकड़ी के सांचे लगे हैं और पीछे मिट्टी का ढेर भी नज़र आ रहा है।

यह दृश्य इमारत निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है।

इस तस्वीर में बर्फ से धकी ढालन पर कहीं लोग स्केटिंग और खेलकूद का आनंद ले रहे है।

कुछ लोग स्की पर फिसल रहे है तो कुछ लोग खेल कूद का आनंद ले रहे है।

नीचे अलग अलग रंग के गेंद भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बड़ी मछली सड़क किनारे ठेले पर रखी है।

यह मछली बाजार जैसा माहौल लग रहा है।

इस तस्वीर में एक छोटी सी दुकान दिखाई दे रहा है।

डेस्क पर बिस्कुट टॉफी तेल साबुन कॉपी किताब और अन्य घरेलू सामान सजा हुआ है।

ऊपर बैग टंगा हुआ है। नीचे स्टेशनरी का सामान भी रखा है।

जो किसी स्टेशन या भीड़ भाड़ वाली क्षेत्र के पास स्थित है।

इमारत के सामने कई लोग आते जाते नजर आ रहे है।

यह दृश्य रोज मार्ग की भागीदौड़ी और आम लोगों के खाने पीने की जगह को दर्शाता है।

इस तस्वीर में एक लाल रंग का चर्चन भवन दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य किसी धार्मिक उत्सव या समारोह का प्रतीक होता है।

और आस पास पेड़ भी लगा हुआ है और ऊपर मे एक चर्च का लगा है।

इस चित्र में क्रिसमस समारोह का दृश्य है।

मेज पर गुब्बारे और सितारों से सजावट की गई है।

लोग सैंटा टोपी पहने खड़े है और एक व्यक्ति सैंटा क्लॉस के वेश में है।

सामने माइक पर कोई भाषण दे रहा है पीछे नीले रंग का पर्दा लगा हुआ है।

सामने मेज जिस जगह पर एक व्यक्ति खड़ा है और दूसरे व्यक्ति उससे से बात कर रहा है।

यह दृश्य नमाज धार्मिक कार्यक्रम का प्रतीक होता है।

इस तस्वीर में खेल मैदान का दृश्य दिखा रहा है।

यहां तीन बच्चे दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रहे है।

सभी बच्चे ट्रैक पर पूरी तेजी से दौड़ते नजर आ रहे है।

उनके चेहरे पर जितने का ललकार और जो साफ दिखाई दे रहा है यह खेलकूद की भाव को दर्शाता है।

इस तस्वीर में एक कॉलेज की इमारत नजर आ रही है।

पास में कई मोटरसाइकिले खड़ी है यह दृश्य किसी कॉलेज या विद्यालय परिसर का प्रतीक होता है।

इस तस्वीर मे एक निर्माण स्थल का दृश्य है।

सामने एक व्यक्ति खड़ा है और पीछे मजदूर पीली हेलमेट पहन कर लोहे की सीढ़ी पर काम कर रहे है।

वे इमारत की नीव या फर्श तैयार कर रहे हे।

यह भवन निर्माण के प्रक्रिया को दर्शाता है।